चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक बड़ु बारिकु कमरा कर छा दिखेणु यखम कई सारी मेज अर कुर्सी छन रखीं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक रोड करा दिखेणी बाटु करा दिखेणु यख रोड का बाटा मा जी कुछ लोग छन।

यखम कई प्रकार का फल छन रख्यां यखम सेब छन रख्यां संतरा छन रख्यां पपीता छन रख्यां।

यख फणे एक दीवाल म कुछ पोस्टर्स छन लग्यां यखमा जी जु छा एक मैकेनिक ह्वाला कि दुकान कर छन लगणी यखम पेटी छा रखी यखमा जी एक पंखा छो एक लग्युं।

का अनुसार यख मा जु छा हम तें एक फ्रिज छ दिखेण लग्युं यख मा जी फ्रिज भीतर अलग अलग सामान छ रख्युं यख मा जी क्रीम रूल छन दिखेण लग्यां।

यख मा जी केक कर छन दिखेण लग्यां यखम कोल्ड ड्रिंक की बोतल छन रखीं यख मा जी फ्रूईटी की बोतल छन रखीं।

यख मेज का एंच गुलदस्ता छन रख्यां पाणी की बोतल छन रखी कप छन रख्यां यख मा जी दीवाल मा जी घड़ी छ जगण लगी फूलों का झालर छन लटकण लग्यां।

इ का अनुसार यखमा जी जु छा हमथे सीडी कर छ दिखेण लगीं यखमा जी एक ईमारत कर छा यखम नीला रंग कु बोल्ड कर छ लग्युं।